ये मेरे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक--

यहां पर एक पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है दिखाई दे रहा है।

यहां पर डीजे की पेटियों का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक बेसमेंट दिखाई दे रहा है।

यहां पर बोहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी टी-शर्ट भी रखी हुई दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारी पैंट भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक पुतला --

यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर रेड कल--

औरतें अभी दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे--

यहां पर साईं नाथ भगवान की मूर्ति भी दिखाई गई।

बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे भी दिखाई दे रहे हैं।

रेड कलर का भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारी लेडिस भी खड़ी हुई दिखाई--

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर वाटिका मैं मैंट भीं बना हुवा दिखाई दे रहा हैं यहां पर वाटिका मैं कुछ पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

कुछ जिम दिखाई दे रही हैं जिम में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।